के लिए बहुत अच्छा जगह है और भी हम --

इस साल मे बहुत सारा पानी है बस आदमी --

तार है वाईट कलर का घर है और पौधे --